पीछे बहोत सारे व्यक्ती दिखाई दे रहे हैं सभी ने सफेद रंग के कपड़े पेहने हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है यहां पर पैड़ियों पर एक आदमी नंगे पांव खड़ा है।

यहां गेट का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक क्रेन कुछ ना कुछ काम कर रही है।

इस तस्वीर पर एक घर है।

यह बहुत ही पुराने समय का घर दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे दो मंजिला बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर के अंदर एंबुजा सीमेंट बेचने वाली दुकान नजर आ रही है।

यह तस्वीर एक अ शादी के फंक्शन की नजर आ रही है जिसमें--

यहां पर दो व्यक्ती घोड़ों पर बैठे हुए हैं।

व एक लाल रंग की चद्दर घोड़े पर नजर आ रही है।

अह का दो औरतें भी दिखाई दे रही हैं।

यह दसवीं एक रेस्टोरेंट की नजर आ रही है। जहां पर ग्रीन कलर के सॉफे दिखाई दे रहे हैं।

वे उन्होंने मास्क लगा रखा है एक सर्जन के जेब मे फोन नजर आ रहा है।

वे ये सब भी यानी कि विजय का जश्न मना रहे हैं।